यहाँ एक थाली मे तीन चम्मच रखे हुए दिखाई दे रहे है उसमे पतला टाइप का --

आदमी के एक हाथ मे हाथ अकेले दिख रहा हैं उसमे चाय भरी हुई दिखाई दे रही हैं उसके सामने कुछ वृक्ष बिजलियाँ भी लगी--

और उसको ताजा तियात -- बहुत अच्छा बना हुआ है वहाँ पर देखने में बहोत अच्छी दुकान में होटल भी टाइप की है जहाँ पर--

दो महिला डलियों में कुछ लेकर जा रही है और कुछ उम सिंघाड़े टाइप के ली हुई है और उसमे वहाँ से पैदल चलके आ रही है और पानी का तालाब भी भरा हुआ है पहाड़ टाइप का भी --